यहाँ पर ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लाइट जलती दिख रही है नीचे की तरफ एक एटीएम का बोर्ड लगा है।